यहाँ पे क्रिसमस मनाया जा रहा है कुछ महिलायें ऊपर टोपी लगा के क्रिसमस बनी हैं |

नीचे स्टेज सजाया गया है जो कि बहोत ही अच्छा लग रहा है। एक आदमी नीचे खड़ा होके माइक में कुछ बोल रहा है।

ऊपर रस्सियों में तिरंगा लटकाया गया है और खम्बे पे भी लटकाया गया है तिरंगा।

पीछे का मंदिर बोहत ही पुराना लग रहा है।

समझ में तो नहीं आ रहा है की ये किस चीज में आई है और क्या आई है किसमे नहीं आई है।

जो कि मूर्ति को बनाने के बाद पानडाल लगाया गया है बोहत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है।

नीचे सब कुछ हो गया है ऊपर अभी सफाईया इसका नहीं हुआ है इसकी सीढ़ी लाल रंग से पेंट की गई है बाहर एक महिला गेट पे खड़े होके बड़े ध्यान से किसी चीज को देख रही है।

नदी में काफ़ी मात्रा में काफ़ी संख्या में औरते महिलाएँ बच्चे सभी पुरुष उपस्थित हुए हैं यहाँ पे पूजन करने के लिए --